यह एक पैलेस है और इसमें रेड कलर की मैट बिछी हुई है।

यह एक ग्राउंड है जिसमे डेकोरेशन कर रखी है डेको स्टेज बना रखी है जिस पर लड़कियां नृत्य करती है डी_जे रखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें मेज रखी हुई है कुर्सियां रखी हुई है दो पंखे हैं।

मेनू रखा हुआ है एक बोतल रखी हुई है फोन पे है बोर्ड है।

और येलो कलर के ऊपर पत्ते से दिखाई दे रहे।

यह एक तालाब है जिसमें पानी है पानी में पत्ते पड़े हुए हैं।

मगरमच्छ बाहर लेटा हुआ है दीवारें हैं।

इसमें एक ट्रक खड़ा हुआ है लकड़ियों का एक--

ट्रेन जा रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी उधर है।

एक आदमी गेट पर खड़ा हुआ है एक बाहर एक--

यह एक फुवारा है कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक घड़ी लगी हुई है दीवार पर।

यह एक रूम है जिसमें रेड कलर के सोफे रखे हुए हैं।

सिल्वर कलर के तकिए हैं मेज रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप है और इसमें एक कार दिख रही है एक स्कूल बस है और आदमी है गाड़ी है मिट्टी है।

यह एक बैंक है और इसमें कुछ आदमी दिखाई दे रही हैं।

ईंटों से सड़क बिछी गई है।

अलग अलग रंग के बलूंस हैं पर्दे हैं।

और ईंटों से थान बनाई गई है जिनके ऊपर कपड़े रखे--